और एक पहिया एक जनेटेर दिख रहा है यहाँ पर ओ- गाड़ीयां भी खड़ी हुई हैं दो।

आपको एक दुकान दिख रही होगी और यहाँ पीले कलर में हाउस भी बने हैं।

और यहाँ है पेड़ दिख रहे होंगे आपको ये वो भैया कुछ कर रहे हैं पानी पी रहे हैं की क्या कर रहे हैं। यहाँ एक दरवाजा रखा हुआ है। एक ब्लू कलर की शटर भी लगी हुयी है।

और यहाँ बहुत सारे घर बने हुए हैं। खम्बा दिख रहा होगा आपको अ अ तारों का।

कोई एक सोनी का बोर्ड दिख रहा होगा एक सैमसंग गैलेक्सी का एक बोर्ड दिख रहा होगा ओप्पो का एक बोर्ड दिख रहा होगा यहाँ कूलर भी दिख रहे हैं|

और यहां एक झाड़ू भी रखी हुई है और एक कुर्सी भी दिख रही है और पंखा भी दिख रहा है और एक गाडी भी है और इसके बाजू में भी एक घर बना हुआ है।

देख रहे है कित्ता पानी भरा हुआ है। कितना सुन्दर पानी दिख रहा है और यहा बदल भी अजीब टाइप के दिख रहे है। बहुत सारे और यहा बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे है आपको --

और यहां बहोत सारी दुकान भी है और यहाँ लोहे के सामान रखा हुआ। एक जाली दिख रही होगी आपको। दो भैया एक भैया क- ह- मशीनें पे है और एक भैया कुछ कर रहे हैं काम।

देख रहे होंगे भाईट मस्जिद और ये हर प्रकार चित्र भी बोहोत मस्त बने हुए हैं और ये अंकल भी बैठे हुए हैं कुर्सी पे ।--